ये स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा लग रहा है और ये कचरा उचरा फेकने का ये --

साफ़-साफ़ टायर लगा हुआ है काउंटर वगैरा बना हुआ है ।